यहाँ रूम है जिसके अंदर एक लड़की बैठी हुई है। एक आदमी है उनके हाथ मे कुछ डॉक्युमेंट्स हैं जो की चश्मा लगाए हुए है पीछे चंद्र शेकर आजाद की पोस्टर लगी है।

ये फैक्ट्री दिख रही है जिसके अंदर सफेद बड़े-बड़े भक्कू लगे हुए हैं बाहर साइड को पेड़ पौधे लगे हुए हैं चद्दरो का टीन शेड डला हुआ हैं।